को इस चित्र में एक बाजार नजर आ रहा होगा जहाँ पर अंग्रेजी में मोंगिनिस करके लिखा गया है इसके ठीक सामने एक लॉरी भी खड़ी हुई है।

इसके ठीक सामने एक ऑटो रिक्षा भी खड़ी गई है।